और वहा पर कई ढेर्-सारे लोग नहाने के लिए खड़े हुए है यहा पर लाइट की चका-चौनद भी हो रही है।

जैसा कि इस चित्र में दिखाया जा रहा है यहाँ पर एक बहुत बड़ी नदी --

पर किसी बगीचे का चित्रण लग रहा है जहाँ पर कई ढेर सारे ब --

देखने में ऐसा लग रहा कि जैसे यह एक फ्रेशेर्स पार्टी हो।